आसमान सफेद दिख रहा है।

कुछ हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

नीचे कुछ कुर्सी दिख रहा है।

कुछ कुर्सी दिख रहा है कुछ लोग--

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

अंदर की ओर कुछ दुकान दिख रहा है एक ए-सी कार्ड आउटडोर दिख रहा है ऊपर पर्दा लगा दिख रहा है।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

आसमान नीला दिख रहा है।

का एक गेट दिख रहा है जो सटल का है।

जिसका रंग हरा दिख रहा है।

मकान में दुकान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक पुल दिख रहा है।

नदी में पानी भरा दिख रहा है ।

कुछ हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

एक सड़क दिख रहा है जो पे सभी--

नीचे का जमीन दिख रहा है ।

पीछे सफेद दीवार दिख रहा है ।

जो काला कपड़ा पहने हुए हैं ।

पीछे की ओर एक दरवाजा दिख रहा है ।

सामने एक तस्वीर पे माला चढ़ा है ।

बहुत सारा पंखा लटका दिख रहा है।

कुछ लोग बैठा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है।

लड़के के पीछे एक गेट दिख रहा है गेट में एक आदमी दिख रहा है।

आदमी पीला कपड़ा पहने हुए हैं ।

जो रैक पर रखा दिख रहा है ।

कुछ सामान खिलौना दिख रहा है ।

इस तस्वीर में एक बड़ा कमरा दिख रहा है ।

पीछे कुछ सामान दिख रहा है ।

ये तस्वीर किसी दुकान का है ।

एक बड़े अक्षरों में किलर लिखा है ।

पीछे झड़ना का पानी गिर रहा है ।

इस तस्वीर में बहुत सब्जी रखा हुआ है।

एक सफेद इमारत दिख रहा है।

दीवार पे पटना कॉन्वेंट लिखा है।

एक लड़का खड़ा दिख रहा है।

लड़का लाल पैंट पहना है।

पेड़ काफ़ी हरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक मैदान दिख रहा है।

बहुत लोग खड़ा दिख रहा है ।

जमीन भूरा दिख रहा है ।

इस तस्वीर में बहुत हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

एक छोटा पौधा भी दिख रहा है बहुत रास्ता दिख रहा है ।

आसमान सफेद दिख रहा है।

एक रास्ता दिख रहा है बहोत हरा-भरा पेड़ दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

पानी साइड में जमा हुआ है रास्ते के किना--

दीवार पर लाइट लटका हुआ है।

लाइट का रंग सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

इमारत पे बहुत सारा तार दिख रहा है एक बड़ा पोस्टर दिख रहा है।

टेंपू का रंग नीला दिख रहा है।

बहुत लोग सड़क पर चल रहा है।

इस तस्वीर में एक मकान दिख रहा है।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

नीला आसमान भी दिख रहा है।

कुछ पेड़ बहुत बड़ा दिख रहा है।

एक स्कैनर लगा हुआ है।

बहुत हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

तीन पेड़ का जड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

ऊपर एक टंकी दिख रहा है।

टंकी लाल दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है पीछे हरा-भरा पेड़ दिख रहा है।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

टेबल भी सफेद दिख रहा है।

पूरा कमरा सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक--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

गुब्बारे का रंग गुलाबी दिख रहा है।

सामने का रेलिंग काला दिख रहा है।

मकान काफी बड़ा दिख रहा है।

एक आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए हैं।

बहुत सारा साइकिल दिख रहा है।

ग्लास शीशे के अंदर रखा हुआ है।

नीचे का जमीन सफेद दिख रहा है।

टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

दोनों गाड़ी चार पहिया है एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

काउंटर का रंग हरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत बच्चे दिख रहे हैं।

ये सभी कोई डांस कर रहा है।

कुछ बच्चा पीला टी शर्ट पहने हुए हैं।

बच्चे घेरे में कूद रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत लड़की दिख रही है।

ये लड़कियां नृत्य कर रही है।